इस तस्वीर में मुझे सजावट दिखाई दे रही है।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

इस तस्वीर में मुझे एक गैलरी दिखाई दे रही है।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

इस तस्वीर में मुझे एक रेस्ट हाउस दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे कुछ फ्लाइट दिखाई दे रही है।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

यहां मुझे कुछ टेबल दिखाई दे रही हैं।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

इस तस्वीर में मुझे कुछ किताब दिखाई दे रही है।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

इस तस्वीर में मुझे एक पार्क दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे कुछ झूले दिखाई दे रहे है।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

इस तस्वीर में मुझे बहुत सारी बस दिखाई दे रही हैं।